सफेदे रंग का आसमान है एक लड़का बैठा है जो आग ताप रहा है।

सर पे कांच लगी है जो सफेद रंग की कांच है पुलिश बाला खड़ा है खाखी वर्दी का दीवाल है सफेद रंग की नीचे

पे एक छोटा सा मसिन रखे गए है जो काफी बड़े बड़े हरे रंग के बड़ा सा गोल आकार का रखा गया छोटा सा मशीन जो सफेद रंग के नीचे जो प्लेट पड़े हुई है ।

ओर एक ए_सी लगी है सफेद रंग की और काच लगे सफेद नीला आसमान और ऊपर से तार गया हुआ है जो काले रंग का नीचे बोर्ड लगी हुई है काले और लाल रग की--

एक घर बना हुआ है जो काच लगे हुए है नीले रंग की और सफेद रंग के घर है खंभे खड़े जो कत्थई रंग के ऊपर से लाइट गई हुई है।